कहीं सारे फूलों से इसे सजाया गया है एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है रेड चेयर भी दिख रही है।

ये सुंदर से छोटे-छोटे छह फव् फव्वारे है और यहाँ बीच में एक पेड़ लगाया गया है वहाँ छोटी सी झांकी बनाई गई है।

सामने बड़ा सा दो चैनल गेट है। जिनमें ताले लगे हुए हैं। एक बड़ा सा पोस्टर सामने दिख रहा है।

और यह नाइट का समय हो रहा है। बीच में एक रास्ता गया हुआ है और एक मूर्ति भी दिख रही है। आजू-बाजू बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं। लाइट ज जल रही --

यह एक गार्डन है जिसका बहुत बड़ा चैनल गेट नजर आ रहा है यहाँ कईं प्रकार के फूल लगाए गए हैं इसमें वाइट और पिंक रोज दिख रहे हैं।